और बाहर कैमरा लगा है फैन लाइट लगी है।

यहाँ पे बहुत सारे लोग झुके हुए जिम करते हुए नज़र आ रहे हैं।

जो फूल खेलते हुए देखते हुए दिख रहा है।

इस चित्र में एक बड़ा सारा हॉल है उसमें आईना लगा है आईने में देखते हुए बहुत सारे लोग--

यह चित्र एक इत्र की शॉप का दिखाई दे रहा है।

जहाँ पे ऊपर बड़ा सारा बैनर लगा है बैनर पर अलहराम--

और नीले कलर की पिलरों जैसी कुछ मशीन यहाँ रखी है।

आस पास बहुत सारे हरे पेड़ दिख रहे हैं।

दीवार पर बहुत सारी पेंटिंग भी लगी--

बहुत सारे लोग यहाँ फोटो खिंचवाते हुए दिख रहे हैं एक व्यक्ति की गोद में बच्चा दिख रहा है।

एक व्यक्ति अपने मोबाइल से अपनी सेल्फी लेता हुआ दिख रहा है जिसने नीली टी शर्ट और ब्लैक जींस पहन रखी--

होर्डिंग पर हिंदी में अटल बिहारी वाजपेई हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल लिखा--

ये चित्र एक तालाब का दिखाई दे रहा है जहाँ पर ऊपर की ओर से पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है पानी का कलर सफेद अथवा --

यह चित्र कपड़ों की दुकान का दिखाई दे रहा है जहाँ पर तीन अलग-अलग डमी खड़ी हैं।

हमारी नन्नू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

उसके पास बहुत सारी मालाएं लटकी हैं जो कि सफेद--

इस यह चित्र एक सब्जी की दुकान का दिख रहा है जहाँ बड़ी सारी थाल मर्ब सारे लाल ऑरेंज हरे कलर के टमाटर दिख रहा है।

छत पे लाइटे लगी हुई है छत सफेद कलर की है नीचे जमीन पर टाइल्स लगी है।

इस चित में नीले कलर का बड़ा सारा फूल है।